लिबरऑफिस इम्प्रेस में प्रस्तुति को प्रिंट करने पर इस स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल में हम प्रिंट करने के विविध ऑप्शंस देखेंगे
स्लाइड्स हैण्डआउट्स नोट्स और आउटलाइन
यहाँ हम उबंटु लिनक्स वर्जन 1004 और लिबरऑफिस वर्जन 334 का उपयोग कर रहे हैं
कभी कभी आपको आपकी प्रस्तुति की हार्डकॉपी प्रिंट करनी होती है
उदाहरण के लिए हो सकता है आप अपनी प्रस्तुति की कॉपिज़ अपने दर्शकों को देना चाहते हो
अतः पहले अपनी प्रस्तुति सैंपल इम्प्रेस पर डबल क्लिक करके उसे ओपन करते हैं
स्लाइड्स की प्रिंट लेने के लिए फाइल और प्रिंट पर क्लिक करें
या फिर CTRL और प कीज़ साथ में प्रेस कर सकते हैं
जनरल और आप्शंस टैब्स में सेटिंग्स जानने के लिए लिबरऑफिस रायटर के डॉक्युमेंट्स को देखने तथा प्रिंट करने वाले ट्यूटोरियल को देखें
जनरल टैब में Print के अंदर डॉक्यूमेंट फिल्ड में हम कई ऑप्शंस देखते हैं जो की विशिष्ट रूप से इम्प्रेस में मौजूद है
यह ऑप्शंस हमें इच्छित फॉर्मेट में अपनी स्लाइड्स की प्रिंट लेने की सुविधा देते हैं
स्लाइड्स हैण्डआउट्स नोट्स और आउटलाइन
हम स्लाइड्स ऑप्शन चुनते हैं
चलिए अब लिबरऑफिस इम्प्रेस टैब पर क्लिक करते हैं
यहाँ आप स्लाइड्स के भागों का कलर का साइज़ का चुनाव कर सकते हैं जिन्हें प्रिंट करना चाहते हैं
कंटेंट में स्लाइड नामे डेट एंड टाइम और हिडेन पेजेस चुनते हैं
जैसे कि टेक्स्ट विवरण देता है यह स्लाइड का नाम दिनांक और समय और यदि कोई छिपा हुआ पेज है उसे प्रिंट करेगा
कलर में ग्रे स्केल चुनते हैं
जैसे कि टेक्स्ट विवरण देता है अन्य ऑप्शंस स्लाइड को इसके मूल रंग में या ब्लैक एंड ह्वाइट में प्रिंट करेगा
साइज में फिट टो प्रिंटेबल पेज चुनते हैं
आप दूसरे ऑप्शंस को लिबरऑफिस इम्प्रेस टैब में खुद से देख सकते हैं
जिस उद्देश्य से आप प्रिंट लेना चाहते हैं उसके आधार पर पेज लेआउट टैब में कई ऑप्शंस मौजूद हैं
मानिए कि प्रिंटआउट के एक ही पेज में आपको कुछ स्लाइड्स चाहिए
अतः पेजेस पेर शीट चुनें
डिफॉल्ट रुप से यह एक पेज पर एक स्लाइड प्रिंट करता है
यह पेज का एक छोटा प्रीव्यू है
ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करें और एक पेज पर कितने स्लाइड प्रिंट करने हैं उसे चुनें
यदि हम 2 चुनते हैं फिर प्रीव्यू में हम दो पेज देख सकते हैं
यदि हम 6 चुनते हैं फिर प्रीव्यू में हम दो पेज देख सकते हैं
द्रव आ बॉर्डर अराउंड ईच पेज ऑप्शन को चुनते हैं
यह प्रिंट करते समय प्रत्येक पेज पर एक काला बॉर्डर बनाता है
यह पेज को अधिक आकर्षक बनाता है
अगला ऑप्शन है ब्रोचुरे
यह स्लाइड्स को पुस्तिका के रूप में प्रिंट करने की सुविधा देता है जो बाइंडिंग के लिए आसान हो
फिलहाल इस ऑप्शन को हम नहीं चुनेंगे
आप खुद इसे बाद में देख लीजिए
यह सुनिश्चित करें कि आप्शंस टैब में सभी चेकबॉक्स अनचेक हैं
यह चेकबॉक्स विशेष प्रयोजनों के लिए हैं
इनकी चर्चा हम इस ट्यूटोरियल में नहीं करेंगे
अब प्रिंट बटन पर क्लिक करें
यदि प्रिंटर सही से कन्फिग्यर हुआ है तो प्रिंटर प्रिंट करना शुरू करेगा
अब हैंडआउट्स ऑप्शन के बारे में सीखते हैं
फाइल और प्रिंट पर क्लिक करें
और जनरल टैब में प्रिंट के अंदर डॉक्यूमेंट फिल्ड में हैंडआउट चुनें
डिफॉल्ट रुप से एक पेज पर 4 स्लाइड्स होते हैं और डिफॉल्ट क्रम है बाएं से दाएं फिर नीचे
इस प्रस्तुति के लिए इसे ऐसे ही रखें
लिबरऑफिस इम्प्रेस टैब में आप देखेंगे कि साइज़ ऑप्शंस चुने हुए नहीं हैं या निष्क्रिय हैं
इसका कारण यह है कि प्रिंट का साइज़ शीट में कितनी स्लाइड्स हैं और शीट की साइज़ द्वारा निर्धारित होता है
अब प्रिंट बटन पर क्लिक करें
यदि प्रिंटर सही से कन्फिग्यर हुआ है तो प्रिंटर प्रिंट करना शुरू करेगा
चलिए पहली स्लाइड पर जाते हैं और नोट्स टैब पर क्लिक करें
यहाँ नोट में हम टाइप करेंगे थिस इस आ सैंपल नोटे
आपके नोट्स प्रिंट करने के लिए जो आपने अपनी स्लाइड्स के लिए टाइप किए थे फाइल और प्रिंट पर क्लिक करें
जनरल टैब में प्रिंट के अंदर डॉक्यूमेंट फिल्ड में नोट्स ऑप्शन चुनें
बाएं ओर प्रीव्यू पेज पर देखें
यह स्लाइड के तल पर आपके टाइप किए हुए नोट दिखाएगा
अब लिबरऑफिस इम्प्रेस टैब पर क्लिक करें
ध्यान दें कि जब हम नोट्स प्रिंट करते हैं उसके लिए साइज़ ऑप्शंस उपलब्ध नहीं हैं
अब प्रिंट बटन पर क्लिक करें
यदि प्रिंटर सही से कन्फिग्यर हुआ है तो प्रिंटर प्रिंट करना शुरू करेगा
आखिर में प्रस्तुति के समय त्वरित सन्दर्भ के लिए स्लाइड्स की आउटलाइन को प्रिंट करने के लिए फाइल पर और प्रिंट पर क्लिक करें
जनरल टैब में प्रिंट के अंदर डॉक्यूमेंट फिल्ड में आउटलाइन ऑप्शन चुनें
बाएं ओर प्रीव्यू पेज पर देखें
यह आउटलाइन या स्लाइड का क्रम उसकी हेडिंग और उप पॉइंट्स के बताता है
अब लिबरऑफिस इम्प्रेस टैब पर क्लिक करें
फिर से ध्यान दें कि जब हम आउटलाइन प्रिंट करते हैं उसके लिए साइज़ ऑप्शंस मौजूद नहीं हैं
अब प्रिंट बटन पर क्लिक करें
यदि प्रिंटर सही से कन्फिग्यर हुआ है तो प्रिंटर प्रिंट करना शुरू करेगा
इसी के साथ हम इस ट्यूटोरियल की समाप्ति की ओर हैं जहाँ हमने प्रिंटिंग के बारे में सीखा
स्लाइड्स हैण्डआउट्स नोट्स और आउटलाइन
इस नियत कार्य की कोशिश करें
एक नई प्रस्तुति बनाएँ
सिर्फ दूसरी स्लाइड प्रिंट करें
पहली चार स्लाइड को हैण्डआउट में प्रिंट करें
निम्न लिंक पर उपलब्ध विडियो देखें
यह स्पोकन ट्यटोरियल प्रोजेक्ट को सारांशित करता है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
जो ऑनलाइन टेस्ट पास करते हैं उनको प्रमाण पत्र भी देते हैं
अधिक जानकारी के लिए कृपया हमें contactspoken हाइफेन ट्यूटोरियल डॉट ओआरजी पर लिखें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
इस मिशन पर अधिक जानकारी के लिए उपलब्ध लिंक पर संपर्क करें httpspoken tutorialorgNMEICT Intro यह स्क्रिप्ट सकीना शेख द्वारा अनुवादित है
आईआई टी बॉम्बे की ओर से मैं रवि कुमार अब आपसे विदा लेता हूँ
हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद